यहाँ पर छोटे-छोटे घास है। देखो छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं। उसको खेल रही हैं।

एक कार भी खड़ी है नीचे देखो ऊपर भी एक रास्ता इसके आर-पार है। जो कि बाहर को जाता है।

देखो ये जो फोटो है ये जो है एक मीटिंग की जा रही है। यहाँ जो साईं साईं लोग हैं ये --